एक व्यक्ति ने गुलाबी रंग की टोकरी अपने हाथ में ले रखी है।

ये एक कपड़े की दुकान है यहां पर एक पुतला है लड़की का।

सजाया गया है सामने की तरफ बहुत सारे व्यक्ति भी--

उसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है एक व्यक्ति खड़ा है।

इस पर सफेद रंग से स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

अंदर की तरफ कुछ व्यक्ति खड़े हैं एक व्यक्ति ने टोपा पहन रखा है और पैंट पहन रखी है।

अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए रंग बिरंगे टेंट लगे हुए हैं हरे गुलाबी नीले--

बफ़े बहोत ही सुंदर लग रही हैं कुछ गमले रखे हुए हैं उन गमले में एक पौधे लगे हुए हैं।

एक लकड़ी की टेबल रखी है कुछ गोल-गोल--

सामने थ्री व्हीलर खड़ा है पीछे बहुत सारे--

एक साइकिल खड़ी हुई है पेड़ के पास में--

बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं रंग बिरंगे कपड़ों में--

इनके पास गन्ने हैं कुछ हरे-हरे पेड़ भी सामने की तरफ लगे हुए हैं एक केले का पेड़ भी है।

लोहे का एक बहुत बड़ा गेट है इसके पास में ही एक बिजली का खंभा है इसके पीछे कुछ एक हरे रंग का--